और एक मशीन भी नजर आ रहा है और बहोत सारे इंसान ने अपने माथे पर कुछ गिट्टी बुखे है और कोई इंसान लेके जा रहे --

मुझे एक दरवाजा भी नजर आ रहा है और इस स्तूपा को एक टेबल में रखा गया है।

स तस्वीर पर मुझे बहुत सारे बस दिखाई दे रहे हैं।

दवाइयों को कंपार्टमेंट वाइज रखा हुआ है।

मुझे बहुत सारे स्टेशनरी भी नजर आ रहे हैं।

इस तस्वीर पर मुझे एक स्केलेटन का मॉडल नजर आ रहा है जिसको एक बेड में लेटाया गया है।

टेबल पर कुछ खाने के लिए पास्ता रखा हुआ है और कुछ शेक भी रखा गया है।

और सामने में एक बड़ा सा रैक भी है जिसपर बहुत सारे जूस और मैगी के पैकेट रखे हैं।

और एक लंबा में रस्ता नजर आ रहा है और सामने पर कुछ पहाड़ भी नजर आ रहे हैं।

भगवान का तस्वीर भी नजर आ--

मुझे बहुत सारे पोस्टर भी नजर आ रहे है जिने पर कुछ कुछ थॉट्स लिखे गए है।

इस बच्चे ने एक काला सा पाइप पकड़ा हुआ है जिससे वह पानी डाल रहा है।

और मुझे इसका एंट्रेंस भी बहुत सुंदर लगा है ऊपर पर बेलकुनी भी है जो की सीसा का है।

कुछ पौधे को बहोत सुंदर से लगाया गया है।

और पौधे को पॉट में लगाया रखा है और एक बड़ा सा फ्लैट सर्फेस दिखाई दे रहा है।

येलो कलर की लगता है यह कोई शोपीस है।

जिधर पर स्कैनर और एक शॉप का अ कटोरा रखा गया है।

और कुछ डेकोरेटिव लैंप भी नजर आ--

बहुत सारे गाड़ी दिखाई दे रही है और एक लड़का भी नजर आ रहा है।

और एक अं अं बॉक्स भी है येलो कलर का।